और लोगो क्या चीज़ है बिक्की राज ऐहां।

हम्म अच्छा के कटिंग --

क्या स्विमिंग पूल है। पूल नहीं है एक ट्रक गाड़ी जाने वाला रास्ता जाने वाला ये।

बहुत अच्छी तरह से ढंग से ही यहाँ बेहतरीन एग्जाम दे मिलता है समझे बहुत अच्छा कॉलेज है स्टेशन के बग --

बहुत अनेक-अनेको फल है जी । सजावट तो बहोत मस्त है |